रूम के अन्दर सोफा दिख रहा हैं।

ऊपर में मुझे ट्यूबलाइट जली हुई दिख रहे है।

इस फोटो में मुझे एक रूम दिख रहा है मुझे बहुत सारे चेयर्स दिख रहे हैं।

बैनर में एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है।

बहुत सारे इंसाने भी दिख रहे हैं।

छोटे छोटे ग्रासेस भी दिख रहे हैं।

टूबलाइट्स भी दिख रहे हैं इंसाने भी दिख रहे हैं।

ट्यूबलाइट्स भी लगाए हुए हैं।

इस फोटो में मुझे बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं।

और एक बिल्डिंग तो इनकंप्लीट दिख रहा है।

बहोत सारे बाइक्स और स्कूटीज भी दिख रहे हैं।

कार्नर में कपड़े की दुकान भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे खिड़कियां और दरवाजे भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे टेबल्स भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

ऊपर पर मुझे एल_इ_डी लाइट्स भी दिख रहे हैं।

बहोत सारे बंबू भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे इनकम्प्लीटेड बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं।

उधर मे मुझे एक लंबा सा घर दिख रहा है।

कमरा का कलर सफेद रंग में है।

कमरे के अंदर मुझे नोटिस बोर्ड भी दिख रहा है।

बिल्डिंग के अंदर बहोत सारे वैराइटीज के सामान रखे गए हैं।

फोटो में मुझे एक घर दिख रहा है मुझे खिड़की भी दिख रहे हैं।

मुझे छोटे छोटे ग्रेसेस भी दिख रहे हैं।

पीछे खिड़कियां और वेंटीलेटर्स भी दिख रहे हैं।

मुझे कॉर्नर में आयरन रॉड्स भी दिख रहे हैं।

ईंटें भी दिख रहे हैं।

ऊपर में मुझे एक फैन भी दिख रहा है।